टोकू पत्ता का पेड़ भी दिखाई दे रहा है फेंसिंग भी दिखाई दे रहा है इसमें।

पुराना कैंडल भी दिखाई दे रहा है आयरन रोड्स सब भी दिखाई दे--

इसमें एक तो लड़का दिखाई दे रहा है उसने कुछ बना रहा है और साइड में एक तो कार्टून रख के है।

जनरेटर भी दिखाई दे रहा है एस_बी_आई लिखके भी दिखाई दे रहे और बिल्डिंग में खिड़की सब भी दिखाई दे रहे--

पूरा मिट्टी है सुखा हुआ सुखा हुआ मिट्टी है पूरा छोता छोता पांस से सभी देख रहे आयरन रॉड सभी लगा करके देखे रेह रहे।

और जहां वो लोग बैठे हैं वो पूरा सुखा ग ग्रास है ऐसे दिखाई दे रहे--

बड़ा सा टंगा के भी दिखाई दे रहा खिड़की में लाइट बल्ब भी दिखाई दे रहा है स्विच बॉक्स भी दिखाई दे रहा एक ठो बॉक्स भी दिखाई दे रहा--

और पूरा लाइट्स सब भी बढ़िया से डेकोरेट करके भी दिखाई दे रहा है।